जहां पर हम लोगों को नदी में एक बड़ा सा नाव दिख रहा है।

सामने में ही एक शीशा भी लगा हुआ है।

सारे बड़े बड़े बिल्डिंग में भी बगल में ही पूरा शीशा लगा हुआ है।

सामने में ही एक और बैनर ब्लू कलर का ले लगा हुआ है।

के बगल में ही एक बहुत बड़ा और बहुत घना पेड़ भी लगा हुआ है।

और ऊपर में एक बाल भी वाइट कलर का लगा हुआ है।

सैलून के ऊपर ही एक बैनर भी लगा हुआ है।

इस इमेज में हम लोगों को नीचे में ही किसी चीज का एक छोटा सा दुकान भी दिख रहा है।

यहां पे बहुत सारे कपड़े और साड़ी वगैरा रखे हुए हैं।

इस इमेज में हमलोगो को एक होंडा बाइक शोरूम का इमेज दिख रहा है।

जहां पे दो तीन बच्चे रेस लगा रहे हैं।